यहाँ पर एक यहाँ पर एक देखो काफी बड़ा रूम है। इस रूम मे एक --

काफी सारे लोहा के आइटम वगैरह को मोड़ कर जो भी आइटम बनाए जाते हैं मोटे-मोटे सरियो के वो आइटम हमको --

काफी अच्छी सुंदर मूर्ति --

देखो कितनी पाड़ मजबूती से बांधते हैं ये लोग। बोहोत ही बड़े हिसाब से किसी को भूल चोट ना लगे।

ताकि फसण अच्छी हो सके कोई भी रोग मर जाता है तो उसकी दवाइ यहाँ पर मिलती है।